पुराना मकान है यहाँ बहोत जंजाड़ हैं। पेड़पौधा हैं। पुराण मकान है। सब झाड़ी वुडी सा है। बहोत झाड़ी हैं।

हरियाली हैसब बहोत पेड़पौधा हैं। देखने मै बहोत अच्छा साफ सफाई है। सब पेड़पौधा हैं बहोत हैं इधर पेड़ हरियाली हैं। सब हरियाली हैं अच्छा है सब साफ सफाई है।